और बहुत दूर-दूर तक हमें अह बोर्ड लगे हुए नजर आ रहे हैं ।

हमें तस्वीर में टेंट लगा हुआ नजर आ रहा है और गुलाबी हमें लाइटें इसमें लगी हुई दिखाई दे रही है ।

हमें जमीन के ऊपर बिछा हुआ कारपेट दिखाई दे रहा है और हमें कुत्ते बैठे हुए नजर आ रहे हैं एक आदमी के पास --

हरा रंग का दिखाई दे रहा है जिस पर मस्जिद बनी है ।

भीड़ हमें इस तस्वीर में लग नजर आ रही है और हमें कारें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं ।

नीचे हमें सफेद टाइल्स लगे हुए दिखाई दे रहा है और कुकड़सी के पीछे हमें दरवाजा लकड़ी का बना नजर आ रहा है ।

कॉफी वर्ल्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और लाइट हमें वहाँ जलती हुई नजर आ रही हैं ।

लाइटें लगी हुई है छत में और पंखा लगा है और झूमर हमें टंगे हुए नजर आ रहे हैं ।

एक पाइप लगा हुआ है वहां पर एक पंखा भी दिखाई दे रहा है।

और हमें दरवाजा अकेले का नजर आ रहा है।

सड़क के उस तरफ हमें हरी घास और पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं पेड़-पौधे --

और हमें अ चादर लगी हुई दिखाई दे रही हैं ।

नीली रेट लिस्ट लगी हुई है और भी सामान हमें जमा हुआ और कोको कोला का फ्रिज हमें रखा हुआ कोल्ड ड्रिंक का दिखाई दे --

हमें गमला रखा दिखाई दे रहा है जिसमें हरा पौधा लगा है ।

और कचरा पड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है एक आदमी वहाँ खड़ा नजर आ रहा है ।

और इस बिल्डिंग के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है नाम अमरदीप डांस स्कूल लिखा हुआ है ।

साइड में हमें एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है दुकान के।

हमें एक इस तस्वीर में बोर्ड लिखा दिखाई दे रहा है जिसमें मैट्रिक्स सिनेमा लिखा हुआ है ।

और हमें बोर्ड लगे हुए नजर आ रहे हैं सड़क पर गाड़ियां--

और भी लोग पीछे नजर आ रहे हैं लाइटे जल रही है ।

और हमें पास में ही शटर दिखाई दे रहा है लगा हुआ कांच का एक गेट दिखाई दे रहा है।

गाड़ियाँ और भी खड़ी हुई हैं ऑटो है एक सफेद कार है ।

इस तस्वीर के अंदर हमें नीला नीला सा थोड़ा सफेद सा आसमान दिखाई दे रहा है ।

और हमें एक सूखा पेड़ की टहनी दिखाई दे रही है ।

और उस पर बैठे हमें एक पंछी हमें नजर आ रहा है ।